जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक मकान बना हुआ है मकान आयतकार आकार में है यहाँ पर बहुत सारे बस लगे हुए हैं।

दुल्हन ने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ है तथा दूल्हे ने गोल्डन और मेहरून रंग का --

जो की शारीरिक क्षमता को बढ़ोतरी करने के लिए व्यायाम में प्रयोग में लाये जाते हैं।

सूर्य अभी-अभी उदय हुआ है यह दृश्य बहुत ही मनमोहक हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही मुश्किल से देखे जाना वाला दृश्य दिखाई दे रहा हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक सड़क है सड़क काफी हलचल वाला है यहाँ पर एक --

छोटे-छोटे रिबन और चिमटियों से बालों को डिजाइन बनाने के लिए तैयार किया है।

यहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं यहाँ पर पंखे भी लगे हुए दिखाई दे रहै हैं तथा दीवार पे छोटे-छोटे पोस्टर --

तथा यहाँ पर ऐसा लग रहा है मानो कोई कार्यक्रम या कोई विरोध चल रहा हो।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ तील मंजिला पीले रंग की ईमारत दिखाई दे रही हैं।

काफी सारी मेज लगी हैं जिसमे बच्चे बैठकर पेपर की मदद से अपनी--